कुछ पुराने खंडर घर बने हुए हैं उसके पीछे एक पेड़ लगा हुआ है। उसके पीछे भी घर बने हुए हैं पीछे एक पहाड़ है जिस पर बोहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं। चॉकलेटी कलर की एक सड़क डली हुई है।